और वहां एक वाटर टैंक भी दिख रहा है बिल्डिंग के ऊपर।

फूल का पेड़ भी दिख रहा है ये फूल तो पिंक कलर का है दिखने के लिए ज्यादा अच्छा--

ये तो एक बिल्डिंग का एंट्रेंस है यहां तो गेट दिख रहा है और--

डिजाइन लगा हुआ हैं और वहां पेड़ दिख रहा हैं छोटा सा।

और यहां दूर से ग्रीन कलर का कटिन दिख रहा है।

अं बाजू में ना छोटा छोटा पेड़ अं छोटा छोटा गमले पे पौधा भी है और यहां घास भी अच्छा दिख रहा है।

राजा राजा खानी कुछ नाम लिखा हुआ है और कुछ बोर्ड पे इंग्लिश मे कुछ लिखा हुआ--

अ अमरूद का पेड़ भी दिख रहा है और यहां बिल्डिंग भी दिख रहा हैं।

यहां पे एक फोटो फ्रेम जैसी बढ़िया सा स्क्रीन दिख रहा है और वहा एक टी_वी भी दिख रहा है।